उसने एक शर्ट पहना है जो हरा कलर का है और हाथ मे गलप्स लगाया हुआ हैं।

जो की एक आदमी अपना दुकान के अंदर है और उस के पास--

बहुत सारे इलेक्ट्रोनिक मे समान है और--